जैसा कि आप देख रहे हैं--

जैसा कि आप देख रहे हैं।

और बहोत सारे येलो कलर के बसे दिखाई दे रही हैं।

जो ये जगह काफी आपको शांति से भरा हुआ दिखाई दे रहा--

और ये घर काफी अच्छा लग रहा है।

प्रोडक्ट यहां पे रखे गए हैं लाइट है पंखे हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक घर है।

जो काफी पुराना हो चुका है।

और गर्मी हवाएं बाहर जाने वाली ही--

और नीचे बहोत सारे बाक्स रखें है।